यहाँ एक आदमी दिख रहा है जो टंकी के अंदर कुछ कर रहा है मशीन मशीन यहाँ पर सारे मशीने दिख रही है और पिछे एक और आदमी अंदर जाते हुआ दिख रहा है।

और साइड में दो गाड़िया और खड़ी हुई है| ये ऐसा लग रहा है जेसे कोई शोरूम में खड़ी हुई है| हरा कलर का कारपेट बिछाया है निचे।

यहा पर एक बड़ी सारी बिल्डिंग दिख रही है| बिल्डिंग में बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं| कुछ फिटनेस के लगे हुए हैं कुछ शक्ति राम मुकेश वगेरा के लगे हुए हैं| बहुत सारी दुकानें दिख रही है।

यहा पर प्रिंटर वगेरा सब होता है| यहा पर बिल्डिंग काफी ऊंची पूरी बिल्डिंग है| बाहर आसपास सब गाड़ियां आती जाती दिख--

एक आदमी बैठा है जो लैपटॉप चला रहा है और कुछ आदमी खड़े हुए हैं जो समान ले रहे हैं।

इसमें बहुत सारी ऊपर-नीचे खिड़कियां है| यह चार मंजिला दिख रही है।